नदी कितना सुन्दर साफ शीतल नदी बहता।

आए पेड़-पौधा आसमान साफ़-सुथरा तारे ही गालिया कच्चा बा माटी क पूरा रास्ता बनल बा।

दूगो बैल लागत ह पानी में नहा तार स।

आउर आपस में कितना प्रेम भाव दिखाव् तरअ सन अ देखअ ओ-पार नदिया के हरा पेड़- पौधा एक दम जंगल लेखा लागता घरो दुआर लउकता नदिया कितना पानी साफ सुथरा एक दम चमकदार चमकता ता।

आ प्लेटफॉर्म लउकता कोनो स्टेशन उशटेशन ह लेकिन स्टेशनवा के पीछबा जोन बिल्ड़िंगिया लउकता उ त और बड़ा सुन्दर लउकता --

इतना बड़ा मैदान बा मैदान में लइका लईकी बइठल बाड़ स लइका खेलत बाड़ स साइकिल एगो सामने खड़ा बा हरा भरा घास था पिछवा घर दुवार लउकता सबके।

और एक शीशा के मेज के ऊपर रखे खा के छोड़ के चल गए मानस उ। टिसू पेपर से हाथ पोंछे ले मानस उ गन्दा लगा --

कोनो दुकान बा परचूरन के मार मैगी टंगल बा मसाला टंगल बा कुरकुरे टंगल बा चिप्स टंगल बा।